यह सिनरी बहुत ही अच्छा लग रहा है यह कोइ शाम का वक़्त है जहा पे यह सन सेट हो रही है और यहाँ पे सन की जो किरने है ओ पुरे सीधे पानी मे आ रही है।

और यहाँ पे ए ए एग्जॉस्ट फॅन लगा हुहा है और यहाँ पे फॅन भी लगी हुई है यहाँ पे व्हाइट कलर की टेबल रखी हुई है।

ये कोई दुकान लग रहा है जहा पे बहुत सारे चीजें मिल रही है यहाँ पे धुपकाटे मिल रही है अगरबती मिल रही है मैगी मिल रही है।

कोई एक फैक्टरी दिखाई दे रही है जो यहाँ पे ब्लू कलर की है और ये पुरे अगल बगल यहाँ पे पुरा यहाँ पे घेरा हुआ है।

कोई मछली है जो समुंद्र में पाये या नदी मे पाये जाती है ये एक पैकेट मे रखी हुई है इसको चिंगड़ी बोला जाता है और इंग्लिश मे प्रॉन बोला जाता है।

और यहाँ पे यह बहुत अच्छी लगती खाने में यह सी फुड है जो बहुत ही टेस्टी होती है।

यहाँ पे अ बुटा रखी हुई है जो कुछ छीले हुए है कुछ यहा पे आ छीले हुए नही है यहाँ पे सब जगह पे बुटा की यहाँ पे चिल्का फेकि हुई है।

और यहाँ पे दूर-दूर में बहुत सारे पहाड़ दिख रहे हैं और यहाँ पे मिट्टी और यहाँ पे छोटे-छोटे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

ऐ कोई दुकान या कुछ ढाबा दिख रहे है जहा पे एक टेबल रखा हुआ है और यहाँ पे एक प्लेट मे व्हाइट कलर के प्लेट मे बहुत सारे यहाँ पे पराठे रखे गये है।

यहाँ पे एक चेयर सोफा रखा हुआ है एक सोफा यहा पे थ्रीस अ-अ थ्री तीन जनो को बैठने के लिए है।

यहाँ पे एक गाय दिखाई दे रही है जो यहाँ पे चारा खा रहा है ऐ चारे का रंग यहा पे ग्रीन कलर का है और गाय के गले मे यहाँ पे रसी बंदी हुई है।

यहाँ पे एक मोर दिखाई दे रहा है जो अपने यहाँ पे पंख को पूरा फैलाये हुआ है और यहाँ पे मोर का रंग यहाँ पे नीला है और उसकी पंख यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रही है और बहुत ही फैली हुई है।